पीछे लोहे की जाली दिखाई दे रही है उसके पीछे फिर मैदान है वो दिखाई दे रहा है पीछे पहाड़ है पहाड़ मुझे दिखाई दे रहे है कुछ घर बने है वो दिखाई दे रहे है गाड़ियां दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा --

यहां खिड़की दर खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए वो मुझे दिखाई दे रहे हैं एक छोटा-सा टेबल मुझे दिखाई दे रहा है टेबल पर कुछ सामान रखे वो दिखाई दे रहे है नीचे मुझे डस्टबिन दिखाई दे रहा है और बेड पर एक चादर रखी हैं।

इस इमेज में मुझे ये एक किला सा दिखाई दे रहा है इनके ऊपर हलके-हलके हरी-हरी घासें से दिखाई दे रही है और यहां आजू-बाजू पेड़-पौधे मुझे दिखाई दे रहे हैं और इस --

सामने दीवार में एक होल है वो होल मुझे दिखाई दे रहा है होल में से उजाला आता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीला और यहाँ मुझे कुछ --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

इस इमेज में मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है बड़ा सा पेड़-पौधे मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक बड़ा सा रोड जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे एक आदमी वहां जा रहा है।

इस इमेज में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है बड़ा सा वहाँ पर कुछ लोग बैठकर योगा कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है और यहां पर मुझे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं घांस दिखाई दे रही है।